यहां पर एक रेल का प्लेटफार्म है।

यह एक पुराने इतिहास के किले का दरवाजा है

के हाथ में एक घड़ी है और आँखों पर चश्मा लगा रखा है।

उसके पीछे एक सितारे के नुमा एक आकृति बनी हुई है।

सामने एक एलसीडी टीवी लगा हुआ है और बराबर में कुछ पेंटिंग के चित्र भी लगे हुए है।

यहाँ पर दो लड़किया हाथ में मोमबत्ती लिए हुए खड़ीं है और दोनों मोमबत्तिया जल रही है।

दूसरी तरफ एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है।

यहाँ पर एक नगरपालिका का दरवाजा लगा हुआ है नगरपालिका के बराबर में --

यह एक मंदिर का विशाल दरवाजा है दरवाजे के सबसे ऊपर छोटा सा मंदिर बना हुआ है।